चाहे पढ़न लिखन के लय। पंखा लगो दुकान में खूब बढ़िया दुकान हेंगी खरीददार हेंगे ग्राहकउ हेंगे।

जामे प्लेट में चावल धरे हेंगे सालाद है। एक प्लेट खाली हेगी एक में चटनी हति वोऊ खाली हेगी और हर प्लेट में चम्मचे धरी हैं एक एक।

जौ मकान बनो खूब बड़ो दू मंजिला मकान हेगो कमरा हेंगी गमला धरे हेंगी।

जो एक लड़का जहां में थाडों दिखाई देरों हेगो जो फ़ोटो खीच रो हेगो जन का। जाके हाथ में मोबाइल हेगो।

और पीछे लाइटें निरि लगी भई हेंगी।

लाल पीले रंग की हैं शीशा लगे हेंगे।

जो मकान बनो हेंगो खूब बढ़ाइया दू मंजिला मकान। निरि गाड़ी ठाड़ी हेंगी। एक पुलिस की गाड़ी ठाड़ी एक काय का पुलिस की मालूम पतो न। पुलिस ठाणी हेंगी। हम्म और निरि खिड़कियां दिखाई दे रही हैं मकान में। आदमी ठाणे हैं औरतें ठाणे हेंगे ।

कुछ हुइयो जन का ताते पुलिस ठाणे हेंगी।

निरि जामे गाड़ी दिखाई देती हेंगी। मकान हेंगे निरे और मोटरसाइकिल है। तीन चार ठाड़ी हेंगी। एक एक मोटरसाइकिल ठाड़ी हेगी।